ये यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसके आगे पार्क बना हुआ है और उसमे बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रीन हरियाली है।